इस फोटो में हम देख पा रहे हैं यह एक केनरा बैंक है जिसमे कुछ कई आदमी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

कलर मोबाईल से फोटो घिंचते हुए दिखाई दे रहें हैं और कुछ औरतें पीछे अगरबत्ती जला रही है।

यह एक सैलून का तस्वीर है जिसमें एक लड़का कटवाते दिखाई दे रहा है जिसमें एक बार्बर मशीन से बाल काटते नजर आ रहे है।